दीवाल का रंग ब्राउन है नीचे कॉफी लिखा है बड़ा सा साइड में टेबल है काले रंग की जिसके ऊपर दो नमक की डबिया रखी है।

यहाँ एक जगह दिख रही है जहाँ पीछे एक झोपड़ा बना हुआ है झोपड़े पे एक बोर्ड रखा हुआ है वाइट कलर का सामने एक आदमी खड़ा है जो की बच्चों को पढ़ा रहा है निचे बहुत सारे बच्चे बैठे हैं।

ये एक जगह हैं जहाँसामने एक गेट लगा हुआ हैं उसक पीछे ब्लू कलर की बिल्डिंग हैं सामने गट के ऊपर कुछ हैं लिखा हुआ हैं काले रंग से साइड में एक छोटा सा ऑफिस बना हुआ हैं उस--

सामने के तरफ एक पेड़ है बड़ा सा और एक छोटे-छोटे लाइट लगे हुए हैं बल्ब एक खंभे के --

पीछे किराने की दुकान है जो की जिसके पास बोरियाँ रखी हुई हैं बहुत सारी और अ सामने की तरफ एक बोर्ड लगा है जिसपे एम.आर.पी. लिखा हुआ है।

यहाँ पर भी एक होटल है जिसके नीचे लिखा है होटल डी.आर.एस. डीलक्स जिसके नीचे एक दुकान है दुकान का शटर है उसके पास में एक बोर्ड दिख रहा है।